ओ गाय के चारे का ढीक दिख रहा है बाजू में एक खेत भी नजर आ रहा है आसमान में बादल नजर आ रहे हैं।

और सामने मे एक इलेक्ट्रिक का बोर्ड भी लगा हुआ है।

और लाइटिंग से पूरा घर सजाया गया है।

वहां पर नीले कलर के ड्रम में--